यहां से सड़क नजर आ रही है और यहां पे लकड़ी के शेड का टूटा हुआ मकान नजर आ रहा है दो अंकल वहां से जा रहे हैं और आसमान भी व्हाइट व्हाइट नजर आ रहा है यहां पे ग्रीन कलर की--

यहां पर एक बर्फ नजर आ रहा है बहुत सारा बर्फ पड़ा हुआ है और और हरी- हरी घास भी पड़ी हुई है।

के घर बने हुए हैं और ग्रीन कलर की घांस नजर आ रही है आसमान भी नजर आ रहा है और ब्लू कलर के पर्पल कलर --

ग्रीन कलर का ब्लू कलर का आसमान नजर आ रहा है सड़क भी नजर आ रही है यहां पर खंबा ही ब्लैक कलर--

यह एक मंदिर है मंदिर में तीन मूर्तियां रखी हुई है मूर्तियों के कपड़े बहुत अच्छे हैं सर पे ताज लगा हुआ है ऊपर व्हाइट कलर की लाइटें लगी हुई है नीचे--

एक सड़क नजर आ रही है और सड़क के साईड में खंबे लगे हुए है और वाईट कलर के घर भी बने हुए है और ट्री भी लगे हुए हैअसमान भी नजर आ रहा है।